इसलिए एंड ये बोहोत बहु ही कीमती है।

जहाँ पे गेट खुला है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे ये ऐसे सीधे जाना हैं रास्ता हैं सुनसान हैं।

रास्ता नहीं है होटेल का रास्ता है अंदर का।

ये दिवस बोहोत ही प्यारा है।

यह एक ई-रिक्शा खड़ी है यहाँ पे औ --

वहाँ से गाड़ियां जाती हैं और यहाँ से सनसेट पॉइंट बहौत अच्छा लगा है।

खाना खिलाया जाता है और यहाँ पे एक ट्रेन का वो भी बना हुआ है कि बच्चों के लिए ट्रेन में --

सुबह तीन बजे से ही चले जाते है यह लोग नदी मे बेठने के लिये --